सामने दो तीन लड़के खड़े हुये है फोटो बहुत शानदार लग रही है।

बच्चे के पीछे बहुत सारे पेड़ दिखाय दे रहे है फोटो बहुत ही सुन्दर--

तस्वीर में बहुत सारे व्यक्ति है वो किसी मैदान में बैठे हुए है।

पत्थर के पास में थोड़ी बहुत हरियाली भी दिखाई दे रही है पिक्चर बढ़िया हैं जिसमे इस फोटो में एक लड़का है जो शायद फोटो खींच रहा है।

लड़का है वो धोती पायजामा पहन रखा है जिसने इसके पीछे है वो दो तीन मकान दिखाई दे रहे है कई सारे ल --

पिक्चर बहुत ही बढ़िया लग रही है ।

मकान के ऊपर की साइड एक फुल माला लगी हुई है।

किसी स्वि‍निंग पूल की फोटो है।